जिसमें से दो आदमी कैश का ट्रांजैक्शन कर रहा है वहां पर ए_टी_एम पर खड़े और बाकी लोग देख रहे हैं।

बहुत सारे लोग वहां पर जैसे पुलिस टाइप का लग रहा है लिखा हुआ एक पुलिस गाड़ी भी खड़ी है और सामने बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं।

यह वासुदेव सर्विस सेंटर है।

एक वजन का कांटा भी रखा गया और सामने एक आदमी है जहां पर कुछ फल वगैरा बेचते हुए नजर आ रहा है।

ए_सी और एक पंखा भी नजर आ रहा है सामने एक बाल्टी भी डस्टबिन भी है।

और साइड में दो ड्रम भी नील कलर का दिख रहा है कुछ बोतल भी है सामने।

तथा यहां पे बहुत सारे साइकिल का पार्ट्स भी नजर आ रहा है।

यह एक कागज की फूल की माला की दुकान है।

इसमें पेड़ के सामने कुछ गाड़ियां खड़ी की गई है।

एक बोर्ड के ऊपर यहां पर लिखा पांच सौ तथा हजार का ऑफ ।

तारीफ का एक दुकान तथा बाटा कंपनी का एक दुकान सामने खोला गया है।

कुछ लोग नदी के ऊपर खड़े हैं तथा कई प्रकार की गाड़ी भी स्कूटी है हीरो होंडा है।

यह एक बेडरूम का सीन है।

कुछ लोगों की बैठने की व्यवस्था बनाई गई है।

यह एक दुकान का सीन है यहां पे एक टेबल एक कुर्सी तथा एक कैलकुलेटर और विभिन्न प्रोडक्ट का सामान रखा गया है।

ऑफिस कार्यालय बिल्डिंग जैसा लग रहा है।

और अच्छी तरह से बेहतरीन से लाइट से सजाया गया है।